एक्साइज करे वाला ह। चारों फोटो कैमरा लागल बा। इ खंभा ह। बहुत सुंदर लागल बा। प्लाई वाला लागल बा। टाइल्स ह।

इ बॉडी बनावे वाला है लाल कलर से रंगल बा बलफ बरता पंखा लागल बा सीढ़ी लागल बा मोट आदमी एमें कर ता एक्सरसाइज बा कर ताने लोग अउरी घूम तान लोग |